वितरित किया जाता हैं आगे भी बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी हुई दिखाई दे रही हैं यहाँ पे बहुत अच्छा आ हरी - हरी गार्डन दो टाइप की दिखाई दे रही हैं नजारा अच्छा देखने मे लग रहा हैं।

एक बहुत बड़ा स्कूल बिल्डिंग वा दिखाई दे रहा है जिसमे बहुत सुन शांत बिलकुल शांत एरिया दिखाई दे रहा है बहुत सारी बसें रखी हुई है स्कूल बस रखी हुई है यहाँ पर स्कूल में जो बच्चे आते हैं स्कूल --

ते बसों का काम होता है गुरु को बच्चों को उनके घर सही सलामत पिक कर छोड़ना होता है और उनको घर से सही सलामत लेकर स्कूल में आना होता है। जिससे उनके पैरेंट्स से--